यहां पे गाड़ी को ठीक किया जाता है यहां पे चार चक्के वाहनों की।

यह एक प्लेटफार्म है | यह प्लेटफार्म बहुत ही बढ़िया है | इस प्लेटफार्म में काफी सारे आदमी ट्रेन का--

यह नदी में पानी बह रही है | इस नदी में मछली भी रहती है | यह नदी--

इस सभी के घरों तक इस खंभे से --

आदमी यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे --

यहां पे बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहां कुछ पेड़-पौधे --

और ये है यह एक कुछ लड़कियाँ सीढ़ी चढ़ रही हैं इसके ईंटें सब ढह चुके हैं।

यहां पे दूर-दूर तक पेड़-पौधे दिखाई --

यह एक दुकान सरकारी यहाँ काम करते हैं --

ये हॉल में काफी सारे आदमी आए हुए हैं।

स्ट्रैंड्स मॉल में बहुत ही अच्छे और सुंदर-सुंदर चींज़े मिलती है।

यहां पे ढलाई करने वाली मशीन है।